सामने थाली पड़ी हुई है और बेलपत्तर भी पड़ा हुआ है।

जे एक सुनयारे की शॉप है जिसमें ती--

एक लाल रंग से बोर्ड पर कुछ लिखा हु--

खेल रहे हैं बैट बॉल जिन्होंने व्हाइट रंग की वर्दी पहनी हुई है।

ये एक पारक की फोटो है पारक के बाहर एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर कुछ वाइट रंग नीले रंग से लिखा--